आगे लगा हुआ है और बगल में अच्छे-अच्छे घर हैं और एक बोर्ड लगा है जिसमे

और यहां से लग रहा है ई-रिक्शा का बैटरी है जो यहां पे मिलता है और बाहर बाहर से खुला रखे हैं --]

बहुत अच्छे-अच्छे क्वालिटी के मार्बल टाइल्स एंड ग्रेनाइट पत्थर उपलब्ध रहता यहाँ पे।